सामने एक बडीसी इमेज है इमेज के ऊपर एक टेलीफ़ोन रखा हुआ टेलीफ़ोन के पास स्टेप्लर और एक पेन रखा हुआ है एक व्यक्ति इस तरफ बैठा हुआ है। जिसने अपने हात--

शाला से मेन दरवाजे से अंदर आते हुए कुछ जल बालिका लाइन से दिख रहे है साथ मे कुछ शिक्षक शिक्षिकाए वो खड़ी हुई है शिक्षक सभी बच्चों को तिलक लगा रहे है और एक थाली हाथ मे लिए हुए है। जिसमे फूल और दीपक जल रहा--

पीछे तरफ तीन झंडे बने हुए हैं और उसका नंबर लिखा हुआ है किनारे तरफ एक बाल्टी रखी हुई है और एक आदमी बै--

उसने अप्रन पहना हुआ है मिरर के नीच उसका चषमा और पर्स रखा हुआ है और एक सीजर या दो सीजर रखे हुए है।

किसी सलून की इमेज हो सकती है जहा सामने दो मिरर दिखाई दे रहे है उनमे चारो तरफ काफी सारे बलब लगाये गए है और किनारे तरफ एक सानिटीझर की बोतल रखी हुई है सामने दो कुर्सिया भी रखी--

काफी सारे फ्लावर और पॉट दिखाई दे रहे है। ऊपर की तरफ सीलिंग पे नीले कलर और ऑरेंज कलर के दो पॉट लटके हुए है।